गेट के साइड में पेड़ लगे हुए है खुला आसमान दिख रही है जो की बहुत ही सुन्दर और प्यारा है।

दुकाने बंद है गाड़ी नज़र आ रही है साइड से और भी दुकान नज़र आ रही हैं यह दृश्य बहुत ही प्यार और मनोरम लग रहा है।

चारों तरफ हरियाली छाई हुई है खुला आसमान दिख रहा है जो की बहुत ही प्यारा और सुंदर है।

जो की बहुत ही सुंदर लग रहा है दिखने में खुला आसमान दिख रहा है यह दृश्य बहुत ही सुंदर है।